एक बच्चा गाड़ी पे बैठा हुआ है जिसका कलर लाल है।

ये फोटो में मुझे एक गेट दिख रहा है गेट के पिलर पर एक क्रॉस साइन बना हुआ है।

ये तस्वीर में एक सड़क दिख रही है सड़क पर एक --

छोटी छोटी बैटरी भी दिख रही है।

घर के पीछे बहोत सारे पेड़ भी दिख रही है।

बाहर कुछ पानी के बोटल भी दिख रही है।

एक पत्थर की सीढ़ियां भी दिख रही है जो ऊपर की ओर जा रही है।

यहां पर कुछ रिंग जैसा बना हुआ है जो नीला पीला हरा और लाल कलर का है।

नीचे काउंटर पे कुछ स्प्रे भी रखा गया है।

ये तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है जिसका कलर येलो और ग्रीन है।

होटल के नीचे कुछ गाड़िया पार्क है और कुछ व्यक्तियां दिख रही हैं।

कुछ कपड़े हैंगर पे टांगे गए हैं।

मंदिर के पीछे एक बहोत एक बड़ा सा पहाड़ भी दिख रहा है।

पेड़ पौधे भी दिख रही है।

यह तस्वीर में मुझे बहुत सारे व्यक्तिया दिख रही है बुजुर्ग बच्चे महिला।

उसके ऊपर एक छोटा सा साइन बोर्ड लिखा है ओल्ड टाउन जो लाल कलर का है।

आगे एक सूखा पेड़ दिख रहा है।

हाथों पर बांसुरी भी दिख रही है जो गोल्डन कलर की है।

पानी भी दिख रहा है।

इस इमेज में एक आदमी कार के इंजन को लिफ्ट कर रहा है।

क्लॉक टावर दिख रहा है जो सड़क के बीचों बीच में है।

पास बहोत सारे इंसान भी दिख रहे है।

तस्वीर में मुझे स्पोर्ट से रिलेटेड सामान दिख रही है।

नदी के चारों ओर हरे भरे घास भी दिख रही है।

झोपड़ी पे सफेद रेलिंग भी लगी हुई है।

सड़क के पास एक सोलर स्ट्रीट लाइट भी दिख रहा है।

आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं।